यह शॉप का इमेज दिखाई दे रहा है।

इस इमेज मे दो तीन आदमी दिखाई दे रहे हैं जोकि मकान बना रहे हैं। एक आदमी खड़ा है और एक आदमी --

और भी कई सारे फले दिखाई दे रही हैं।

और उसके पास कुछ बड़े-बड़े पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं।